यहां सामने हमें दो लोग दिखाई दे रहे हैं इनके हाथ में एक बड़ा-सा कैमरा है।

यहाँ हमें बहुत बड़ा जिम दिखाई दे रहा है जिम में काफी सारे मशीन्स रखी हुई हैं यह सभी एक्सरसाइज मशीन्स है मशीन का कलर येलो एंड ब्लैक है।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

यहाँ हमें काफी सा बड़ा सा एक मैदान दिख रहा है मैदान में जो है छोटे-छोटे से कुछ मंदिर जैसे हमे आकृतियॉ दिखाई दे रही हैं ।

यहां हमें बहुत बड़ा रूम दिखाई दे रहा है यह चर्च का रूम है जिसमें सामने हमें एक पर्सन दिखाई दे रहे हैं जो फादर है।